उसका रंग सफेद है और एक चिटकनी दिखाई दे रही है उसमें लॉक लगा हुआ है।

और जमीन पर मैट भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत बड़ी ग्राउंड दिखाई दे रही है ग्राउंड में बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी बाइकस दिख रही हैं।

यहां पे दुकान दिख रही है दुकान के ऊपर अंबा एस_डी लिखा है।

यह एक बहोत बड़ा रिजॉर्ट दिखाई दे रहा है।

और इसमें विंडो भी दिख रहे हैं विंडो में मिरर लगे हुए--

दीवार दिखाई दे रही है। दीवार पे वॉलपेपर दिखाई दे रहा है। दरवाजा दिखाई दे रहा है। फर्श दिख रहा है।